इस सड़क पर बहोत सी गाड़ियां आती जाती है।

इस हॉस्पिटल के बरंडे पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं।

यहाँ अनेक प्रकार के सजावट लगाए गए --

आग को बुताया जाता --

यहाँ पर तरह-तरह के किताब कॉपी कलम पेंसिल आदि मिलते हैं।

यहाँ सभी सामान एलेक्ट्रोनिक के है।

है मंदिर काफी बड़ा है।

यहाँ पर एक गुपचुप पानीपूरी एओम् --

यहाँ पर काफी सारे आदमी देखने भी आए।

यहाँ पर काफी सारे कमरे हैं।

यहाँ पर बोहोत से गअ गाड़ी आकर डीजल भरवाते हैं।

यह मशीन के द्वारा बाल को काट रहा है।